दिवार के पास मुझे एक बाइक और एक स्कूटी खड़ी दिखाई दे रही है साथ मुझे कुछ लड़के दिख रहें हैं।